गाड़ी को ठीक कर रहा है।

फिरोजी कलर की सारी दीवारें दिखाई दे रही है।

और कुछ बच्चे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे --

और एक आदमी मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने --

और सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं और सीढि़यों का कलर ब्लैक पत्थरों से बना हुआ हैं।

पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पिच कलर की साड़ी है और व्हाइट कलर --

इस पिक्चर के अंदर हमें बहुत सारी मिट्टी दिखाई दे रही है।

फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं कुछ आर्टिफिशियल --

दिखाई दे रही है उनके हाथ में तसला दिखाई दे रहा है।